तस्वीर मे देखने के लिए यहां पर एक नीला रंग का बोर्ड लगा हुआ है और वहां पर एक आदमी स्कूटर पर जा रहा है ये तो बोहोत बड़ी जियो कंपनी--

इस चित्र में देखने के लिए यहां पर सेतुआ और वहां पर पानी पर बोहो बड़ी नदी दिख रही है और यहां पर बहुत सी बड़ी नदी पानी नजर आ रहा है और--

एक मूर्ति डब्बे के अंदर खड़ी हुई है और बहुत सारे दरवाजे और दरीचे दिख रहे हैं।